मुझे इस पिक्चर में एक अलमारी जैसा दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सारी हिल्स रखा हुआ है।

और दरवाजा में पुश भी लिखा हुआ है।

ये पिक्चर में बहुत सारा बागान है।

और ऊपर में पुतले पे बहुत सारे कपड़े टंगा के रखा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में एक ए_टी_एम जैसा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बड़े बड़े बिल्डिंग भी देख रही है।

और नीचे में कार्पेट भी बिछा के रखा है।

दीवाल में बैलून का भी ड्राइंग बना के रखा हुआ है।

टेबल भी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बहुत सारे स्टैचू भी बना के रखा हुआ है और साइड में वायर भी दिख रही है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा जानवर दिखाई दे रहा है।

बाहर में एक कार्टून भी रखा हुआ है।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

और ड्रो का अंदर में कार्टन भी रखा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारा आदमी चेयर में बैठ के दिख रहा है।